छोटा सा खिड़की का खिड़की टाइप का फ्रेम बना हुआ है अलुमिनियम का लग रहा है|

जो की लाइन में लगा हुआ है पेड़।

जो फर्श किया गया है वो मिट्टी का लग रहा है देखने में |

रंग बिरंग का फूल है इसमें स्टेज में एक कुर्सी भी लगा हुआ है जिसमें लड़का लड़की बैठते हैं। लाइटिंग बहुत ही अच्छा है खूबसूरत बहुत अछा लग रहा है देख --

उसके बाद बेकरी स्वीट्स चाईनीस इसमें बहुत अच्छा लाइटिंग लगा हुआ है बहुत सारे सामन है स्वीट्स हैं और कुछ आदमी नज़र आ रहे हैं जो खड़ा हो कर सामान ले रहे हैं।